बहुत सारे लोग फूलों को तोड़कर बाजार में बेचते है।

ये आदमी अपने कमरे के पर-ले अंदर लेटा हुआ है उल्टा।